और हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है। कमरे में हमें यहां पर दीवार दिखाई दे रही है। दीवार का कलर हमें यहां पर सफेद दिखाई दे रहा है साथ ही साथ हमे यहाँ पर बहुत सारी लाइटें भी दिखाई दे रही हैं और हमें यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि सफेद कलर का कपड़ा पहने हुए ---

बोहोत ही बड़े जंगल दिखाई दे रहे हैं। जंगल में हमे यहाॅं पर बोहोत सारे हिरण दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी हिरण का कलर हमे यहाॅं पर कत्था दिखाई दे रहा है।

कुछ हिरण का कलर हमें यहाँ पर ब्राउन नजर आ रहा है। कुछ हिरण के सिंघ हमें बहोत सारे नजर आ रहे हैं। कुछ ह हिरन के सिंघ नहीं दिखाई दे रहे हैं और हमें यहाँ पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें यहाँ पे एक डब्बा दिखाई दे रहा है।